और यहाँ पर बहुत सारे चाची लोग भैया लोग भाभी लोग अंकल लोग आंटी लोग आया हुआ है ।

पटाका जला रहै है और यह भी बहोत दूर-दूर से--

स्टेट के ऊपर कुर्सी लगाया उधर दीदी लोग देख रही है बाराती आने वाले--

जैकेट वगैरा जींस वगैरा रखा हुआ है और देख सकते लाइट वगैरा बहुत सारे लगा हुआ है मेटल --

भैया लोग पैसा अपना निखने के लिए आते हैं और--

आदमी आते है और यहाँ पे देख सकते है अ फोर व्हीलर खड़ा है और इधर --

यहाँ पे एयरोप्लेन है और यहाँ पर आया हुआ है बहोत ही सारे देख सकते हैं और ये--

इस शुभ अवसर पे आज इसका जन्मदिन है इसी कारण यहाँ पे सब कोई मोमबत्ती--

ये भैया लोग शूट करने के लिए आय हुए है कैमरा पर शूट करने के लिए आया हुआ है।

और ये मिस्त्री इधर से कुछ माल को इधर खींच रहे हैं और वहाँ पे लेबर खड़ा है।

वाइब्रेटर मशीन लेके और उधर--

आदमी आते हैं और अपना डोले शोले बनाते हैं और यही से--

सारे पैसे रिबन वगैरह छीट रहै है इसके ऊपर और बहुत ही --

बड़ा फैक्ट्री है और इसमें सब कुछ बनता है लोहे का घड़ी वगैरह--

ये दुकान है और काफी सारा सामान रखा हुआ--

ये भैया लोग यहाँ पे खड़ा है और खिड़की को कलर कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को और बहुत ही ब्यूटीफुल और यहाँ पे --